पोस्ट ऑफिस के ऊपर रेड और व्हाइट कलर में बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह पिक्चर एक बोटैनिकल पार्क के दिखाई दे रही है।

पीली हैं हरी हैं लाल है और नीली कुर्सियां दिखाई दे रही हैं कुर्सियों पर बच्चे आदमी और औरत --

पीछे की ओर एक घड़ी लगी हुई दिख रही है।

इसमें बहोत सी काफी के कैन रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।